हैमोटरसाइकिल और रोड किस तरह रोड पर चलना चाहिए ।

यहाँ पर संपर्क करे पीछले वाले और बैठने वाले से --

और स्वस्छ भी रहना चाहिए यहाँ डेली के डेली --

हम त अलग से देख रहे हैं ।

यहाँ नीचे से देखने पर आसमान भी लाल लौक रहा है । अथी ऊपर से देखने पर नीचा पुर्थ्वी अँधेरा लौक --

होता है । इसलिए पुर्थ्वी के काला भी नीचा दिखता है और ऊपर भी लाल दिखाई देता है ।

पता नही नहर है की क्या है । इस बात पर हम धन्यवाद करते हैं ।

यह देखने में अँधेरा भी बताइये ये लउक रहा है और घास पूरा दुनिया भी लाल लउक रहा है ।

घर भी देखने में बढ़िया लग रहा है और प्लस का चिन्ह भी बुझा रहा है ।

बहुत भी हो गया आदमी उदमी के क्षति इस बात पर हम धन्यवाद कहते हैं ।

कौन कौन भगवान है से इतना कह नही पाएंगे काहे कि फोटो भी लोक रहा है आपलोग चिन्ह कर --

ये भी भगवान के सब आदमी सब पूजा कर रहा है गोड़ भी लग रहा है इस बात पर हम धन्यवाद कर सकते हैं पूरा दुनिया वालो को धन्यवाद --

क्युकी बिल्डिंग है की शीशा के है से मालूम नही ।

यहाँ पे जाना पड़ेगा तभी पता चलेगा।

और बगल में होटल है खाना उना भी खा सकते हैं ।